स सब औरतो ने शाल ओढ़ा हुआ है सक्यूरिटी गार्ड भी है जो कि गोली लेके खड़ा है तीन आदमी खड़े हैं सीढ़ी मे जो कि इधर देख रहे हैं।